ये रोड दिखाई दे रहे है काम करते हुए नजर आ रहे है और यहाँ कुछ हो रहा है यहाँ मुझे सीमेंट दिखाई दे रही है गिट्टी बालू दिखाई दे रही है काम करते हुए नजर आ रहे है कुछ पाइप पड़े हुए दिखाई दे रहे है।

नदी दिखाई दे रही है बहुत बड़ी नदी दिखाई दे रही है नदी के तरेंगे दिखाई दे रही है पेड़-पौधे दिखाई दे रहे है घने और बहुत बड़ा पहाड़ दिखाई दे रहा है पानी में-में बैठा हुआ दिखाई दे रहा है।

और ये मजदूर दिखाई दे रहे है और काम करते हुए नजर आ रहे है और सभी ने सेफ्टी कैप लगा राखी है येलो कलर की कैप लगा रखी है यहाँ एक हो रहा है घर बनता हुआ नजर आ रहा है काम करते हुए नजर आ रहा है।

एक लेडीज दिखाई दे रही है ब्लैक कलर के भुरखे में दिखाई दे रहे है एक बच्ची को ली है और यहाँ मुझे एक गेट दिखाई दे रहा है वो अंदर जाते हुए नजर आ रही है यहाँ एक व्यक्ति खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है।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

मुझे बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे हैं और कुछ लोगों ने व्हाइट और कुछ लोगों ने ग्रीन कलर के कपड़े पहन रखे हैं और फुटबॉल खेलते हुए नजर आ रहे हैं और चारों ओर जाली लगी हुई दिखाई दे रही है और पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं।

नजर आ रहा है वो हथी पे बैठा हुआ नजर आ रहा है हथी के सुढ के ऊपर बैठा हुआ दिख रहा है फोटो खींचता हुआ नजर आ रहा है और बहुत सरे पेड़-पौधे दिखाई दे रहे है यहाँ पे--